कुछ लोग रिक्शा में बैठ रहे हैं कुछ उतर रहे हैं |

सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी गाड़ी भी खड़ी हुई है |

जिसमे एक खिलाड़ी के पैर पर --

उस बोर्ड पर एस.बी.आई. लिखा हुआ है।

जिस मे सभी लोग धूम धाम से नृत्य कर रहे है ।